एगो आदमी होऊ पहाड़ पर काय गो पेड़ है ये एक गो दू गो तीन गो चार गो पांच गो पेड़ हेय एनहु हेय।

और लाइट बैरेत हय एगो आदमी खड़ा हेय--